यहां पर एक कैंटीन को दिखाया है जहां पर शिमला कैंटीन लिखा हुआ है।

यहाँ पर एक समुंदर को दिखाया गया है जिसके ऊपर बहोत बड़े समुंदरी जहाज हैं।

यहां पर एक सालून को दिखाया गया है जहां पर अंदर लोग बैठे हुए हैं।

इसके आसपास एक गार्डन है जिसकी जिस पे बहुत सारे।

और यहां पर काफी सारे लोग फोन में बात कर रहे हैं।

और एक आदमी यहां पर स्कूटी में चल रहा है।

और ग्राउंड में काफी हरी भरी बड़ी बड़ी घास लगी हुई है।

यहां पर एक पावर हाउस को दिखाया गया है एक डैम को दिखाया गया है.

हाथ खड़े करके रखा हुआ है और कुछ यहां लोगों को दिखाया गया है।

और आदमियों को दिखाया गया है जो बाइक को--

और कुछ बच्चे आपस में खेल रहे हैं।

और एक स्टेशनरी शॉप भी है।

उनमें से एक अंगूर काले कलर का है और एक ग्रीन कलर का है।

यहां पर एक मंदिर को दिखाया गया है।

बैलून भी बेचने को रखे हैं।

पेंटिंग भी बनाई गई है और यहां पर।

और नीचे फ्लोर पे टाइल लगाई हुई है और यहां पर एक लेडीज है।

जिसको यहां मुरम्मत करने के लिए लाया गया है।

और यहां पर नीचे बहुत सारे पुराने टायरों को दिखाया गया है।

और इसके आसपास हरे कलर के काफी सुंदर प्लांट है।

यहां पर एक चर्च को दिखाया गया है जहां पर क्रॉस लगा हुआ है और कुछ--

हात्र को दिखाया गया है जो हाथ में मोमबत्ती लेकर खड़े हुए हैं।

आदमी को दिखाया गया है जिनमें से तीन मर्द हैं और दो लेडीज हैं।

यहां पर एक काफी बड़ी बिल्डिंग को दिखाया गया एक मंदिर को दिखाया गया है।

जहां जाने के लिए एक रास्ता है जो गेट्स खुला हुआ है और आसपास पेड़ लगे हुए हैं।

ड्रेस पहनी हुई है और इनके पीछे एक क्रॉस --

मन्नत मांग रहे हैं जो एक मंदिर है।